में काफी बड़ी रेलिंग भी लगी है जिन पर कुछ जगह कपडे टंगे हुए दिखाई दे रहे हैं पीछे की तरफ आसमान दिखादे रहा है।

इतने सामने के तरफ अअअ स्टेम भी लगी हुई है।

और वो कुछ और कीड़े-मकोड़े भी बेचते हुए दिखाई दे रहे है सामने के तरफ एक अंकल और एक आंटी हैं।

पीछे की दिवार पर एक घड़ी भी लगी हुई है साइड के एक कैलेंडर जैसा टंगा दिखाई दे रहा है।

ये सामने के तरफ मैदान दिखाई दे रहा है मैदान में कहीं-कहीं घास लगी हुई है साइड में दो बहोत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।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

ये सामने के तरफ एक दुकान दिखाई दे रही है ऊपर की तरफ जिस पर पोस्टर लगा है उस पर एयरटेल लिखा हुआ है।